मुझे एक समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है। इसमे बोहोत पानी भरा हुआ है और एक दीवार भी है। जिसमे बहुत सी इटे लगी हुई है।